बदलापुर नगर परिषद बदला बदलापुर में बचत भवन है ये --

ये ऑफिस हॉल है हॉल में ये ऑफिस बना हुआ है।

बड़ा सा ये मंदिर है मंदिर की एक बड़ी और दो छोटी गुंबद दिख रही है ये ऊपर।

शाम का समय दिख रहा है नदी दिखाई दे रही है सामने बड़ी सी हमें।

बड़ी सी लाइब्रेरी में ये बहुत सारी किताबें रखी हुई है शोकेस में अलमारियों में बहुत सी किताबे रखी है।

का हे नीचे स्कूटीयां खड़ी हुई है उसके अंदर कुछ स्कूटीयां खड़ी हुई है।